लेफ्ट साइड में कुछ रैक है जिसमें हल्का फुल्का लाइट है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते दे रहे हैं दो खम्बा टाइप का बना हुआ जो हल्का स्काई --

ना राइट साइड दिखाई दे रहा है ना लेफ्ट साइड दिखाई देरा हे।

फूल नजर आ रहे हैं फूल जो है बाउंड्री से पूरा घेरा हुआ है।

इस तस्वीर में एक हल्का सा फोटो लिया है कैमरा से लिया गया है।

तस्वीर में मुझे बहुत सारे धुंधलापन दिखाई दे रहे है।

गुलदस्ता कैसे बना हुआ है जिसमें झिलमिल झिलमिल लाइव चल रहे हैं उसके आगे मंदिर है कीश भगवान का कृष्ण भगवान का--

मंदिर है ये पता नहीं चल रहा--

रोड चन दिखाई दे रहा है गाड़ी घोड़ा चल दिखाई दे रहा है।